और इस दृश्य में एक लड़की है।

और उसका नीचे में बहोत सारा लाइट --

और एक बास्केट भी दिखाई दे रहा है।

और उसका नीचे में बहुत सारा--

और रूम में तीन चेयर नजर आ रहा है।

और रूम के अंदर में सी_पी_यू भी दिखाई दे रहा है।

या पे एक दुकान है।

और एक लाइट बल्ब दिखाई दे रहा है।

और घास भी दिखाई दे रहा है।

बहोत सारा वायर दिखाई दे रहा है।